आदमी खड़े हुए है झंडा लगा हुआ है और सम्मानित किया जा रहा है।

दो ऐ.सी. लगी हुए है एक बैंक ऑफ़ बड़ोदा का ए.टी.एम. है फोटो कॉपी की दुकान है और एक पंजाब नेशनल का बोर्ड लगा हुआ है।